लोहा का सीसा वाला गेट नजर आ रहा है।

चार पांच लोग नजर आ रहे हैं पंखा और लाइट दिख रहा है।

इस तस्वीर को देखके ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट खेल रहे हैं।

बगल में मिरर नजर आ रहा है शीशा का गेट दिखाई दे रहा है।

बगल में खिलौना का दुकान भी नजर आ रहा है।

साइड में दीवाल में बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया है एक वाइट कलर का बोर्ड भी नजर आ रहा है।